चार पाँच छः लड़के खड़े हुए हैं जिनने लाल कलर की--

पीछे भाभी जी बैठी हुई हैं भाभी जी के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है।

--एक बड़े ओ बड़े कांच का दरवाजा लगा हुआ है और उसके अंदर लाइट जल रही है।

एक लेडी झाड़ू लगाती हुई बहुत सारा कचड़ा और गार्डन है जिसमें चेयर लगी--

यह कपड़े की शॉप है यहाँ रंगबिरंगे कपड़े रखे हुए है।